सफ़ेद कलर में और ऊपर भी लोग लेटे हुए है और सामने भी --

एक बोर्ड टे नीचे एक एक खंबा है दोनों लंबे एक ये ये- थोड़ा हाय है और दूसरा भी हर ही है और वो बोद मे तो बोद मे तो पीओएसटी --

ये देथिये बहुत बड़ा धर है बहुत बड़ी हवेली है यहां पे थिलती लदी हुई है तीन-चार और देथिये यहाँ पे इधल से रास्ता भी है।